बहुत ही सुंदर बैलून लगे हुए हैं रेड और वाइट कलर में यहाँ पर स्काई ब्लू कलर के बैलून भी दिख रहे हैं।

यह एक कपड़ों की शॉप है और इस शॉप मे बहुत सारे कपड़े रखे हुवे है यहा पर बच्चों की स्कर्ट भी लगी हुई हे।